एक बच्ची जो कि लेटी हुई है स्विम करती है जहा से वहां पर--

एक टेबल लगा हुआ है जिस पर एक रेड कलर का प्लास्टिक बिछया गया है और एक नल है साइड मे और काफ़ी सारे डब्बे रखे हुए --

एक रेड कलर का पट्टी लगाया गया है जो कि साइड में एक गाड़ी भी खड़ी है और दो आदमी भी खड़े हैं।

और एक बाल्टी भी रखा हुआ है।

एक टेबल लगाया गया है जो कि उसपर कुछ रखा गया डब्बा --

दो तीन आदमी अंदर में दिख रहे हैं बोर्ड को हुक लगा रहे हैं और एक आदमी मोटरसाइकिल पे बाहर में बैठा हुआ है ।

एक मैम खड़ी है वहां पर जो कि उस बच्चे सब को देख रही --

और काफी अच्छा नजारा आया है आसमान का और एक आदमी ब्लू शर्ट पहने हुए जा--

यह कपड़ा का दुकान है जहां पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं और एक पीला कलर का और ब्लू कलर का कोट रखा हुआ है।

यह एक घर है घर के ऊपर जो कि योगा कराया जा रहा है। काफी सारे बच्चे बच्चियों बड़े छोटे आए हुए हैं और एक बोरा बिछाकर योगा कर रहे--

और एक बाजाल लगाया गया हैं ऊपर में।

चार चक्का वाला कुछ है उस पर रखा गया है लोहे का।

काफी धूम धमाका से छठ पूजा को किया जा रहा है।

और बहुत सारे बच्चियां बड़े-छोटे सब आए हुए हैं और पूजा कर रहे हैं।

यह एक होस्पिटल है जो कि साफ साफ बोर्ड में लिखा गया है जय दुर्गा मेमोरियल होस्पिटल ।

हॉस्पिटल के बाहर दो तीन चप्पल भी रखे हुए है। और हॉस्पिटल का गेट खुला हुआ है। उसके बगल में ही एक गेट है जो की वो बंद है।

धूप का टाइम है जो की काफी ज्यादा लाइटिंग लग रहा है देखने में--